यह दुकान ऊंह बिल्डिंग के नीचे दर्शाई गई है यह ऑन रोड दुकान है।

यह तस्वीर बड़े बड़े हिल स्टेशन की है यहां पर आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में से झरने को जाते हुए नजर आ रहा है।

साथ ही में पेड़ पौधो की हरी भरी है।

यह तस्वीर एक हॉस्पिटल के अंदर की नजर आ रही है तस्वीर देखकर ही आप अनुमान लगा सकते है।

डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हुए नजर आ रहे हैं।

इसके बाउंड्री को ग्रास्ते से ग्रास कारपेट से डेकोरेट किया हुआ है साथ ही में इसको बाहर से--

यह तस्वीर हिल स्टेशन के होटल रूम की दर्शाई गई है यहां आस पास बहोत सुंदर-सुंदर --

इसके एरिये को ग्रीन ग्रास से कटिंग करके डेकोरेट किया गया है।

यहां पर हरी भरी हरियाली नजर आ--

ॲ टेबल पर डंबल्स रखे गए हैं। व्यक्ति सामने खड़ा होकर--

तस्वीर देखकर ही आपको समझ आ रहा होगा यह बहुत बड़े बड़े पड़तों की तस्वीर है यहां पर हर तरह के कलरफुल डिजाइनिंग --

और यहां पर इस रूम में कूलर भी लगाया गया।

नहाते हुए और बच्चा पानी के अंदर खड़ा होता हुआ न दिख रहा है।

यह दृश्य संध्या का नजर आ रहा--

यहां पर खाने के टेबल चेयर भी सजे हुए हैं।

यह तस्वीर एक कौन रोड की दर्शाई गई है यहां पर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई गई है जहां पर --

यहां पर ए_टी_एम बैंक बनाया गया है और साथ ही में--

कंप्यूटर क्लास नजर आती है यहां पर कई सारी बेंचेस में अलग अलग डिपार्टमेंट में--

यहां पे मैदान बनाया गया है। बीच मे पेड़ पौधों की हरि भरी हरियाली नज़र आ रही है।

कई सारी मिक्सर के कट्टे भी साइड में रखें--

अ ग्राहक को कपड़े दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं।